नीचे में एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है।

उधर बच्चा का पास एक चप्पल भी है।

बिल्डिंग का बाल्कनी में आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक कच्चा घर दिखाई दे रहा है।

और एक बोरा भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बंबू भी दिखाई दे रहा है।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

पीछे में ड्रम सेट भी दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारा लोहा भी दिखाई दे रहा है।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

जिम में तीन लड़का दिखाई दे रहा है।

साइड में एक फोटो फ्रेम भी दिखाई दे रहा है।

और एक लाइट भी जलते हुए दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक दुकान है।

ट्रेन के साइड में बहोत सारा आदमी चलते हुए दिखाई दे रहा है।

साइड में एक बेंच भी दिखाई दे रहा है।

ये बहोत सारा हैंड वॉश भी दिखाई दे रहा है।

एक फिल्टर भी दिखाई दे रहा है।

घर में एक सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।

पीकॉक का पुतला भी दिखाई दे रहा है।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

बहुत सारा फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में दो लड़का दिखाई दे रहा है।

और दो पिलो भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा बैलून भी दिखाई दे रहा है।

और दुकान के अंदर बहुत सारा कार्टून बॉक्स दिखाई दे रहा है।

वॉल का साइड में बहोत सारा आदमी भी दिखाई दे रहा है।

एक छोटा सा गुमती भी दिखाई दे रहा है।

अंदर में बहुत सारा कार भी दिखाई दे रहा है।